और इसके ऊपर भी एक शोरूम बना हुआ है जिसमें कूलर और पंखे आदि रखे हुए है।

इस यह बस रुकी हुई है उसके सामने एक आदमी खड़ा है जिससे रेड कलर की शर्ट पहनी है और ब्लू कलर की जींस पहनी और सर पे गमछा बांधा हुआ है।

और उसके किनारे-किनारे बहुत दर अ दराज बने हुए हैं उस दराज में चूड़ी के डब्बे और भी कॉस्मेटिक के बहुत सारे समान रखे हुए हैं।

यह चित्र एक मैरिज हॉल का है इसको बहुत सुंदर फूलों से और पर्दों से सजाया गया है इसके बाहर इसके एंट्रेंस में दो पॉट रखे हुए हैं।

इसपे अलग अलग उम्र के अलग अलग लोग बैठे हुए हैं ब्लू कलर का पीले कलर का हर कलर की यहां पे--